एक जगह का चित्र है जिसमें कुछ औरते मर्दिश कर रही हैं।

ये एक जगह का चित्र है जिसमें कुछ हरे रंग के फल दिख रहे हैं।

एक जगह का चित्र है जिस में कुछ लोग दिख रहे हैं।